यहाँ बहार की तरफ इसमें फ्लेक्स लगा हुआ है जिसमे लिखा हुआ है अंदर की तरफ कोचिंग क्लासेज चल रही है बाहर की तरफ एक एल्युमीनियम गिलास का दरवाजा है जो खुला हुआ है।

टमाटर रखे एक किरेट में आलू एक किरेट मे लस्सान सामने की तरफ एक टेबल पर लोकि भिन्डी पत्ता-गोबी संतरे अनार सेयुं फल रखे हुए हैं सामने डब्बा भी रखा हुआ है ये एक दुकान --

पीछे भी राजहंस लिखा हुआ है इसमें अंदर की तरफ सीटे लगी हुई हैं ये इलेक्ट्रिक ऑटो है सामने एक पेड़ है।

शोरूम है सामने की तरफ एक बाइक शोरूम नजर आ रहा है जिसमें बहुत सारी बाइकें खड़ी इसमें स्कूटी हैं इसमें बाइक भी हैं इसमें स्प्लेंडर बाइक भी खड़ी हुई हैं सामने की तरफ एक रिसेप्शन काउं --

इस पार्लर की दुकान है सामने की तरफ यहाँ बहोत सारी पेस्ट्री केक रखे हुए हैं इसमें डेरी मिल्क चॉकलेट भी रखी हुई है।